आकर के छोटे-छोटे पोधे लगे हैं यह ग्राउंड के --

बहुत सारे नाव चल रही है इस नाव में बहुत सारे --

नहाते है। एवम कपड़ा खिचाते है।

यह सीढ़ी पर चढ़ कर यह लड़का-लड़की --

है यह रेस्टोरेंट काफी बड़ा है ।

इस नदी में बहुत सारे आदमी --

यह मैरिज हॉल काफी सुन्दर लाइट से --

पहाड़ है यह पहाड़ काफी बड़ा है।